पहनने के लिए कपड़ों को खरीदा जाता है और ब्लेजर सेल्स के बारे में दिखाया जा रहा है।

और सूरजमुखी के फूल दिखाए गए हैं।

और काफी अच्छी तरह से इसकी खूबसूरती को भी दिखाया गया है।

कुछ बच्चे खेल रहे हैं कंपटीशन की--

और बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

दिखाए गए हैं और मशीने जिसे--

जिम के डंबल है। बॉडी भी बनाई जा सकती है और काफी--

ये एक मेगा फैशन की शॉप को दिखाया गया है।